राजकीय महिला महाविद्यालय बदायूं उत्तर प्रदेश।

कॉलेज है। यह कॉलेज का फील्ड है जो कि बहुत बड़ा --

। यह एक ऊँची बिल्डिंग है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी एवं का उपयोग किया जाता है।